मुझे सामने केकेदा धाबा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लंच एंड डिनर वेज एंड नॉनवेज लिखा हुआ है ।

और यहां पे लाइटिंग वगैरह भी काफी सारी लगी हुई है इधर साइड में स्कूटी वगैरह खड़ी हुई दिखाई दे रही है और ये जो ढाबा है वो ठेके--

मुझे सामने एक बुक सेंटर दिखाई दे रहा है ये शायद बुक लाइब्रेरी है यहां पे काफी ज्यादा बुक्स वगैरह रखे हुए हैं ।

और यहां पे जो जगह दिखाई दे रही है ये काफी ज्यादा ब्लैक एंड वाइट फोटो है सामने में खजूर का पेड़ और ये जो --

यहां पे जो कार वगैरह खड़े है वो एक लाइन से खड़े हैं ये पार्किंग एरिया है ।

और ये जो रोड है वो उस पे अभी फिलहाल गाड़ी वगैरह तो दिखाई दे रही है बस यहां पे कार वगैरह खड़ी है ।

बलून वाला झोला लगा हुआ है बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं कुछ औरत आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सामने में एक मूंगफ़ली चना चौरग्राम वाला--

मुझे सामने एक आदमी और एक औरत दिखाई दे रहे हैंजो कि शायद किसी पार्टी वाटी में गए हैं यहां पे फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं ।

यहां पे जो बुक्स वगैरह रखी है वो एग्जाम में एग्जामिनेशन की तैयारी की बुक रखी हुई है।

मॉल को काफी सुंदर तरीके से अभी इसमें लाइटिंग वगैरह लगाई गई है और यहां पे जो लाइट है वो लगी है ।